पिक्चर एक बॉली बॉल गेम है बहुत सारे लोग खड़े हुए है देख रहे है उन लोग मैच को और इन लोग का यूनिफार्म का कलर ब्लू और ब्लैक में है।

पिक्चर एक होण्डा बाइक की दुकान की है यहाँ यह बिल्डिन्ग बहुत ही बड़ी है और होण्डा जो लिखा है वह रेड कलर मे है।

गाँधी जी हाथ में लाठी पकड़े हुए हैं यह मूर्ति ब्लैक में हैं और बहोत सारे गाड़ी मोटर्स दूर-दूर से बिल्डिंग और कार्स भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक डैम का पिक्चर है सात डैम बंद है एक डैम खुला है उसमे से पानी उसमे से पानी बह रहा है और पुरा पानी बह गया है और हरे भरे पेड पौधे भी बहुत सारे हैं यहाँ पर।

इस पिक्चर मे तीन कार दिखाई दे रही है तीनो कार व्हाईट कलर में है और दुर में पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है और कुछ घर भी दिखाई दे रहे है ।